ये सुपर सेट है और बहुत से दूसरी चीजें हैं यहां पर --

मूवी सॉन्ग का टाइम यहां पर लगा होता है और यह बियर शॉप है वाइन शॉप है।

और और टीचर यहां रेस्ट भी करते हैं और नेक्स्ट पीरियड की।

आसपास का माहौल बहुत खूबसूरत है गार्डन भी बहुत अच्छे से यहां पर बना हुआ है।

बिल्डिंग में मरामती का काम जारी है बहुत से मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं।

लोग मंदिर तक जाएंगे और वहां पूजा होगी।

यह पार्क दिखाया जा रहा है जहां पर आदमी खड़ा है यह पार्क बैठने की जगह है बहुत से लोग यहां आते हैं विजिट करते हैं।

ये पुराने किले की तस्वीर दिखा रहे हैं ये राजा महाराजों के जमाने से--

खूबसूरत सा है कोई यहां पर खूबसूरत नजारे दिखा रहे हैं।

इसमें जो हमारा दिखा रहे है ये आल इंडिया मेडिकल साइंस के।

बहुत से लोग यहां तफरीक करने के लिए आते हैं बच्चे सैरो तफरीक करते हैं बहुत ही --

अपने रकम जमा करवाते हैं यहीं पर सरकारी बैंक है यहां पर कमा।